लाइट लगी हुई है दो खम्बे लगे हैं और एक गाड़ी खड़ी है और उम्म दो आदमी खड़े --

एक पेल्ट पेट्रोल टैंक है बड़ी लाइट लगी हैं तीन आदमी खड़े हैं दो चेयर रखी हैं और सामने पार्क है।

एक बच्चा घूम रहा है पार्क में नीली फिसल पट्टी बनी है और सीढ़ियाँ लगी है ऊपर छत्र है हरी नीली।